अपना-अपना मेट बिछाके अलग-अलग मुद्रा में लेटे हुए है।

और आगे की ओर काफी सारे छोटे-छोटे गमले रखे गए हैं।